साइड में लाइट लगी और बहोत सारे चेयर्स टेबल है और इधर एक फोनपे का वो लगा है।

कपड़े के और साइड में कुछ बा और सीढ़ी है और नीचे बम्बू है।

पीछे बहुत सारी हरियाली है उधर नारंगी कलर का एक फ्लैग है ऊपर एक ।

और पीछे उन उस उनलोग के लिए एक स्टैंड है।

एक अंकल बहुत पीछे रहे गए और बहुत अच्छी जगह है ये मेरा मन कर रहा है उधर जाओ--

ये इधर बहुत सारे कोक कहते हैं पीकॉक मतलब पीकॉक सॉरी --